पेड़ बाग और सड़कें भी दिख रही हैं।

मसाले बिस्कुट नमकीन आदि और इसी में साथ ही में एक फ्रिज भी रखा हुआ है।

एक कार और एक बस इस पानी से निकलते हुए दिख रहे हैं और लोग रेनकोट पहनकर इस बारिश से बच रहे हैं।

इस फोटो में एक चौराहा दिखाया जा रहा है।

नीली बा ऑरेंज कलर की पट्टीयों पर खड़े हुए हैं।

इस फोटो में स्विमिंग पूल दिखाया जा रहा है।

मेट्रो स्टेशन का नाम भूतनाथ मार्केट है।

एक दूसरे से रेस कर रहे हैं।

का कलर कॉपर कलर का--

के बगल से नदी बहती हुई दिख रही है।

इसीमें कुछ लोग भी खेत पर काम कर रहे हैं।

इस फोटो में मेट्रो स्टेशन का टॉप फ्लोर दिखाया जा रहा है।

और उसके बगल से एस्कलेटर लगा हुआ है।

और सामने ही वॉल पर काफी सुंदर पेंटिंग --